यहाँ पर मुझे बड़े-बड़े होल्डिंग्स दिखाई रहें हैंबच्चा साइकिल ले कर जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहें हैं ।

यहाँ एक मुझे शादी का मंडप दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर काआफी सुंदर छोटी-छोटी बच्चियाँ गरबा नृत्य करते हुए दिखाई दे रही हैं ।

यह एक काफी सुंदर क्लासरूम है इसमें छोटी-छोटी बच्चियाँ--

जिस पर अलग-अलग तरह के होर्डिंग्स लगे हुए है ।